बगीचा दिखाई दे रहे है एक घर दिखाई दे रहा है घर का कलर वाइट कलर का दिखाई दे रहा है आस-पास तार दिखाई दे -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

शायद पास बुक दिखाई दे दूसरी ओर गार्डेन दिखाई दे रहा है एक बिजली का बड़ा खम्बा दिखाई दे रहा है और बहुत सारे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में सामने की तरफ मुर्गियाँ दिखाई दे रही है जो की रंग-बिरंगी दिखाई दे रही है सामने की तरफ दो बॉक्स रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में सामने की तरफ बहुत बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है दिखाई दे रहा है दिखाई दे रहा है।

इनका दिखाई दे रहा है येलो कलर का नीचे की तरफ झंडे बने हुए दिखाई दे रहे और एक स्कूटी दिखाई दे रही --

आस-पास पत्थर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ दिखाई दे रहा --

वाइट कलर का दिखाई दे रहा है एक बाइक खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

इस फोटो में एक लड़की दिखाई दे रही है फिसलपट्टी पर दिखाई दे रही है जिसने ब्लैक कलर का कपड़ा पहने हुए है।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

इस फोटो में एक नदी दिखाई जा रही है नदी में एक बहुत बड़ा जहाज दिखाया जा रहा है जहाज काफी बड़ा और लम्बा दिखाया --

इकाई जा रही है दवाई देखई जा रही है दीवार का कलर दिखाया जा रहा है रेड कलर ।

आस-पास कुछ लड़कियाँ दवाई दिखाई दे रहे पास में एक पेड़ दिखाई दे रहा है एक रेलिंग दिखाई दे रही है जो वाइट कलर की देखाई दे रही है।

ऊपर की तरफ बड़े-बड़े पेड़-पौधे दिखाए जा रहे है यह काफी छोटा दिखाया जा रहा हैं कुछ पेड़ येलो कलर के दिखाए जा रहे है।

में रस्सी डाली हुई है गले में जो की रेड और व्हाइट कलर की दिखाई जा रही है।